और एक लड़की जा रही है और वहाँ पर छोटे-छोटे पेड़-पौधे दिखाई पढ़ रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और पीकॉक जो है वो --

और वहाँ पे कॉटन में कपड़ा छुपा हुआ रहता है जहाँ पर से हम लोग लेते --

शर्ट पहन के हैं और वहां --

आदमी उहाँ पे खड़े हैं और उहाँ पे वाइट कलर का मिठाई नजर आ रहा है रेड का --

सफ़ेद कलर का बहुत बड़ा है।